मेज मे एक पुरानी सी इमारत दिख रही है जिसमे दो तीन लोग दिखाई दे रहे है ऊपर के साइट और एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

और यहा पे जो रोड है उसपे टाइल्स बिछी हुई है जो रेड और येल्लो कलर की दिखाई दे रही है।

उपर आसमान दिखाई दे रहा है और एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जिसपे से एक स्कूटी लेके एक इंसान जा रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पे एक चिडिया बेठी हुई है।

इमेज मे एक घना जंगल दिखाई दे रहा है और उसमे ढेर सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

इमेज मे एक पुराना किल्ला सा दिखाई दे रहा है। जिसके उपर ढेर सारा पेड़ पौधे लगे हुए है। सामने मे--

यह इमेज मे एक मस्जिद दिखाई दे रही है और आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान मे सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है।

यह इमेज मे एक हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है। जिसमे ढेर सारे डॉक्टर नर्स दिखाई दे रहे है।

डॉक्टर कुछ देख रहे है और कुछ पेशंट भी दिखाई दे रहे है। टेबल पे मोबाइल बोटल और फ़ाइलस रखे हुए है। और ए_सी लगा हुआ है।